सामने कुछ प्लास्टिक के सामान भी टंगा हुआ दिख रहा है दुकान के अंदर एक तोलने की मशीन भी नज़र आ रही है।

इस चित्र मे एक इमारत नज़र आ रही है इसके बाहर एक दरवाजा बना हुआ दिख रहा है।

सामने बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे है इमारत के सामने एक घास का मैदान भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है शेड के बाहर कुछ गमले भी रखे हुए नजर आ रहे है।